यहाँ एक बहोत बड़ा खेत हैं जहाँ पर खेत में पानी भी चल रहा हैं और दो बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।